यहाँ सामने में फील्ड दिखाई दे रहा है बहोत बड़ा है। फील्ड में एक जेंट्स दिखाई दे रहे है जो खेल रहे हैं और यहाँ ऊपर में भी कुछ दिखाई दे रहा है आसमान में घेरा।

तो कुछ लोग बैठी हैं कुछ खड़ी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे दीवाल दिखाई दे रहा है। वाइट कलर --

लोग जेंट्स और लेडीज सब बैठे हुए हैं और ऊपर में बहोत सारा लाइट्स भी जल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर में दिखाई दे रहा है।

ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे वाइट कलर का गाड़ी। एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है पीला सा।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

यह सामने में एक मंदिर जैसा दिख रहा है यहाँ पे सजाया हुआ है।

अलग-अलग कलर के लाइट्स जल रहे हैं। कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। छोटे-छोटे हैं। ऊपर में आसमान में --